मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जीव है यहाँ पे कंपूटर है यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं।

मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ताजियाँ बना रहे हैं यहाँ पे एक भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे एक टुकरा खड़ा हुआ है यहाँ पे एक मस्जिद है।

मैं देख सकता हूं कि यहां पे नदी है यहां पे पत्थर है यहां पे बहोत सारे यहां पे पेड़-पौधे हैं यहां पर --

क्योंकि यहाँ पे एक कार है यहाँ पे मैकेनिक है यहाँ पे काम चल रहा हुआ है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक मशीन पे रखी हुई है।

मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे बोट लगे हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं कुछ गेम खेल रहे हैं।

मैं देख सकता हूं यहां पे ये कार खड़ी हुई है यहां पे एक सामान खड़ा हुआ है यहां पे एक जीप खड़ी हुई है।

मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं यहाँ पर देख सकता हूँ--

चिप्स की पैकेट टंगी हुई है यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे अनार जला रहे हैं यहाँ पे एक भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान है ये यहाँ पर--